कलर ग्रीन कलर का हैं ये यहाँ का रूम --

ये एक गार्डन पा गार्डन जैसा लग रहा है मुझे इसके आस-पास में ग्रीन कलर से पुताई हुआ है इसका गेट ब्लू नीला कलर में है इसके आस-पास में पेड़-पौधे दिख रहे है लेकिन यह एक सुनसान जगह लग रहा है।

यह एच.डी.एफ.ज़ी एच.डी.एफ सी बैंक हैं।